और कुछ स्कूटी भी नजर आ रही है।

कुछ कार भी दिखाई दे रहे हैं।

और साइड में चेयर भी दिखाई दे रहे है।

जिस बिल्डिंग के बाहर गार्डन एरिया में बहोत ही खूबसूरत एक फाउंटेन के बीचों बीच मूर्ति स्थापित की गई है।

इस दृश्य में एक मैदान नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक पब्लिक प्लेस दिखाई दे रही है।

और एक ऑटो भी जाती हुई नजर आ रही है।

और कुच्छ व्यक्ति भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और वो व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर खड़ा नजर आ रहा है।

जहां पे बहोत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए नजर आ रहे हैं।

दृश्य में एक शॉप दिखाई दे रही है।

और इस शॉप में बहोत से कपड़े रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ कपड़े हैंग किए हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक चर्च के अंदर का नजर आ रहा है।

और वे सारे महिलाएं और पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं।

और उसके छत पे कुछ मीनारे भी बनाई गई है।

बहोत सारी बाइक पार्क की गई नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक खाली कैंपस नजर आ रहा है।